अ आदमी बैठे है अ जिन्होंने सफेद रंग की --

साथ ही ये काफी अच्छी जगह है।

यहां काफी सारी मशीनें पड़ी हैं।

साइड में एक टी_वी भी लगी हुई है पीछे की तरफ थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया गया है।

यह एक मारुति सुज़ुकी का शोरूम है।

यहां एक होटल है जिसका नाम दरबार रेस्टोरेंट है।

जो कि हरे रंग का है यहां पर बहुत सारा पानी भी है।

यह एक कैफे का फोटो है।

यहां पे काफी अच्छा डेकोरेशन करा है।

यहाँ पर शिवाजी महाराज की फोटो है।

जो कि बहोत ही हरियाली को छा रहे हैं रेड कलर के मंदिर के ऊपर गोल्डन कलर है।

यह एक माउंटेन की फोटो है।

यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।

अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं।

और यह सफेद रंग की बिल्डिंग बनाई है।

यह काफी सारे लोग बैठे है।

यहां पर पीछे दो खिड़कियां भी हैं।

इधर एक कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर दो लोग खड़े हुए है।

यहां पर दो पक्षी बैठे हैं।

कुछ ऑटो है कुछ बाइक है ऊपर एक हरे रंग का पेड़ है।

इसके साइड में एक सुगन मोटर का बोर्ड रखा है।

यह एक मारुति सुजुकी का बोर्ड लगा है।

यहां पर दो अंकल बैठे हैं।